ये पाइप से पानी का छिड़काव कर रहा है चारों तरफ नीचे की तरफ काले रंग का पाइप पड़ा हुआ है कुछ हरी-हरी घास भी उगी हुई है।

सामने की तरफ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बाहर की तरफ एक पीले रंग की--

और बाहर की तरफ कुछ गाड़ियां भी खड़ी हैं रोड पर।